यहाँ सामने में एक रोड दिखाई दे रहा है और रोड पे एक बाइक जा रहा है।

यहाँ पे सड़क दिखाई दे रहा है।

दाल में और सब्जी में यहाँ पे चम्मच लगाया हुआ है।

यहाँ सामने में एक गेट दिखाई दे रहा है बड़ा सा और सामने में --

और यहाँ एक पूल है जिससे पानी बहुत ज्यादा --